यहाँ पे सामने एक ऑटो खड़ा हुआ है जो चार्जिग वाला ऑटो है ओर पीछे एक बाइक भी खडी हुई है ओर यहाँ पे सामने से एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे सामने एक बिल्डिंग बन रही है जो की अभी कम्प्लीट नही हुई है और यहाँ पे सामने से टिन लगी हुई है और यहाँ पे सामने सामान रखा हुआ है।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

और सामने से उम्म आह बाहर साइड की कुछ घर दिख रहे हैं और पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहाँ पे सामने से रोड बना हुआ है यहाँ पे सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे एक व्यक्ति बाइक पे बैठा हुआ है सामने गेट लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए।

यहाँ पे सामने एक कॉफी शॉप बना हुआ है और यहाँ पे सामने कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे है अंदर चेयर और टेबल रखी हुई है।

टंकी रखी हुई है टाइल्स रखे हुए हैं और यहाँ पे नीचे मिट्टी दिख रही है और जो की येल्लो येल्लो कलर में दिख रही है और ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं जोकी व्हाइट कलर में दिख रहे हैं ।